यहां पर सामने एक व्हाइट कलर का घर है जहा पे एक पोस्टर भी लिखा हुआ है जोकि ब्लू कलर से लिखा है।

और ये सेंड से खेल रहे हैं और कुछ मस्ती भी कर रहे हैं।

और यहां पर कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं और कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं तो कुछ लोग ऑटो से जा रहे हैं और कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं।

यहां पर एक लिंटर डालने की कोशिश कर रहे है और यहां पर पिलर भी खड़े कर दिए है।

यहां ये उठा रही है एक व्हाइट कलर के कटे को जिसमे ईंटे भी है।

यहां पर एक लड़की है जिस ने कंचो को डूबा रखा है पानी में--

और इसमें यहां पर एक टोर्च भी जला रखी है।

एक मेम पढ़ा रही है और यहां पे कुछ चेयर भी लगी हुई है और साथ ही साथ यहां पे पेड़ पोधे भी लगे हुए है।